एक आदम् नजर आ रहा है जिम जिम क्-इधर में करर् दिखाई दे रहे है। जिम कर रहे मशीन है। जिम जिम कर रहे हैं।

बिजली जैसा तार नजर आ रहा है | मकान भी नजर आ रहे है | पहाड़ जैसा दिखाई दे रहा है | घर दिखाई दे रहे हैं ।

उसमें भी कुछ आगे भी नजर आ रहे हैं।